ये एक रेस्टोरेंट की फोटो है जहां पे बहोत अच्छे सोफे लगे हुए हैं गोल्डन कलर के।

इसके इर्द गिर्द भी पेड़ लगे हुए हैं इस बेंच के साइड में भी एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है जहां पे ऊपर छाता जैसा दिख रहा है।

नीचे वहां पे ब्राउन कलर की कुछ टेबल है और वहां साइड में एक कुर्सी है ब्राउन कलर की।

यहां पे एक मंदिर जैसा बना हुआ है जिसके अंदर एक बुद्ध की फोटो है जिसको बुद्ध से मानते हैं वहां पर कुछ लोग भी अंदर है।

और यहां से कुछ झूले वूले लगे हुएं हैं स्लाइड भी हैं बहुत सारे कलर के ऑरेंज ब्लू ग्रीन कलर के--

और ये एक रेस्टोरेंट की पिक्चर है अ इसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिस पे रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

और ऊपर इस पे लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई है साइड में दीवार का कलर ब्लू और रेड कलर का है।

पेट्रोल पंप के साइड में भी कुछ अ कमरा जैसा बनाया हुआ है वाइट कलर का है।

यह एक मंदिर की फोटो है जिसको सीढियाँ हैं चढ़ने के लिए औऱ सीढ़ियों पे मार्बल वगैरह लगा हुआ है।

यहां पे एक स्टेशनरी शॉप है जहां पे लिखा है तेजा बुक स्टॉल वहां पर बहुत सारी बुक्स बेचते हैं।

ज्यादातर ये फिल्म वगैरा मूवीज की बुक्स हैं और साइड में और एक शॉप है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है येलो कलर का और उसपे ब्लैक से लिखा हुआ है।

ये एक फर्निशिंग शॉप है जहां पे ये परदे वरदे बेचते हैं जैसे बेडशीट है पिलो है पिलो कवर है।

ऑरेंज कलर के है ब्लू कलर के है स्काई ब्लू कलर की है ग्रीन कलर के हैं और ऊपर फैन वैन भी लगे हुए हैं और लाइट में भी बहुत अच्छी है।

यहां से शर्ट दिख रही है बहुत सारी और वहां पर एक बंदा अंदर जा रहा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है और पैंट पहना हुआ है।

जो ये खेती बाड़ी कर रहे हैं एक के हाथ में कुछ कर कटोरी जैसा है उसमें कुछ पानी जैसा दिख रहा है।

और वहां पर इन्होंने कुछ ग्रीन कलर का लगाया है ग्रीन कलर के छोटे छोटे पौधे हैं वहां पे।

और सामने इसका ग्राउंड जो है वो खुला है पूरा और इसमें कुछ आयरन रॉड्स लगी हुई है वहां तक।

और इसके इर्द गिर्द भी पेड़ पौधे हैं ऊपर आसमान पे कुछ बादल छाए हुए हैं।

ये तावा जैसा लग रहा है जहां पे खाने की चीज बेचते हैं वहां पे तावा लगा हुआ है।